और इस मंदिर में बहुत सुंदर कलर का रंगों का प्रयोग करके इसको सजाया गया है बोर्ड के

और खेल मैदान के सामने एक इमारत है जो अभी नई बन रही है खेल मैदान मे --

फिलिप्स की स्ट्रेटनर मशीन मसाजर मशीन शेविंग ग्राइंडर मिक्सर जार --

ये ग्राहकों को विश्वास दिलाने के लिए लगाया गया है और श्री एयर यहां पे उपस्थित है।

आनंद धारा डिस्टिक ऑफिस का है।

यहां पार्क में बहुत सारे दो और पेड़ उगाए हुए हैं।

दी गई पिक्चर एंड पे डिजिटल स्टोर की है यहां पे बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स उपलब्ध है।

आने वाले ग्राहकों के लिए बैठने और खाने की व्यवस्था है।

इस आदमी ने ब्लू कलर की जैकेट ऑरेंज कलर के शूज पहने हैं।

होंडा एक्टिवा राइन बजाज प्लैटिना पल्सर की रिपेयरिंग व वॉशिंग की जाती है।

साइड में प्लांट्स लगाए गए हैं और रेस्ट्रो के सामने वाले दीवार को सुंदर रंगों से पोता गया है।

बोरावड़ रेलवे स्टेशन की है यहां प्लेटफॉर्म नंबर टू पे--